लड़कियों के पीछे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बलून है बलून का कलर यल्लो है और बॉक्स का कलर ब्लैक।

उसी पेड़-पौधे के सामने ही एक कार लगी हुई है कार के पीछे एक टेंपो खड़ा है टेंपो के पीछे एक एस_आर बाजार--

कुछ गिटार से बजा रहे हैं कुछ के गिटार का कलर ब्लू है तो कुछ का रे--

यहाँ पे एक ओपन फील्ड को दर्शाया गया है बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई है कुछ बंदे काम देख रहे हैं।

औ उनसे बात कर रहे हैं पीछे कुछ पेड़ है जिसे ताड़ का पेड़ कहते हैं ये ताड़ का पेड़ बहोत सारे दिखाई देखे जा रहे हैं।

पीछे कुछ घर है जो ईंटों से बनी हुई है कुछ रेड है और देखने से ये लग रहा है कि बहोत हरियाली--

तालाब के पीछे बहोत सारे पेड़-पौधे देखे जा रहे हैं ऊपर आसमान है।

टहल रही है पार्क का गेट लोहे का है जो कि ब्लू कलर का है।

किसी में पंजाब नेशनल बैंक का बैनर लगा हुआ है किसी में भीटू शोरूम का बैनर लगा हुआ है बिल्डिंग के जस्ट सामने एक सिल्वर कलर का पोल है।

बिल्डिंग के जस्ट सामने ही कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दिए जा रहे हैं जिसमें से एक बड़ा पीपल का पेड़ है बिल्डिंग के बगल में भी एक वाइट कलर का बिल्डिंग देखा जा रहा--

मशीन का कलर ऑरेंज एंड ब्लैक है नीचे का सरफेस सीमेंटेड एंड येल्लो स्ट्रिप्स हैं।

और मछलियां खरीदने के लिए बहोत सारी औरतें झुकी हुई हैं जिसमें से एक औरत येल्लो कलर की साड़ी पहनी हुई है।

एक बंदा येलो कलर की टीशर्ट पहने वाइट कलर की पैंट पहने खड़ा हुआ है एक बंदा वाइट शर्ट की शर्ट टीशर्ट पहन के ब्लैक कलर का पैंट पहना--

जो बहोत सारी कार्य को करती है जैसे रेलवे टिकिट बुकिंग करना फॉर्म फिलअप करना।

यहाँ पे हम एक बिल्डिंग को देख पा रहे हैं जिसका कलर है लाइट यल्लो एंड ग्रीन बिल्डिंग के टेरेस पे--

टैम्पो के सामने एक येलो कलर का टी-शर्ट पहने हुए एक बंदा खड़ा हुआ है।

सैलून के सामने कुछ पेड़-पौधे भी हैं स्वास्तिक का चिन्ह है दीवाल --

यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं।

सामने कुछ बिल्डिंगें हैं जो कि पिंक कलर की है ऑरेंज कलर की है ब्लू कलर की है बिल्डिंग के खिड़की का कलर --

यहाँ पे हमें एक पार्क का तस्वीर दिखाया जा रहा है यहाँ भी एक बड़ी मूर्ति है जो कि लॉर्ड बुद्धा की लग रही है सामने कुछ बंदे खड़े--